यहाँ पे उच्च स्तर की पढ़ाइयाँ होती है।

यहाँ पे केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है | यहाँ पे बहुत सारे बच्चे रोज पढने आते हैं | यहाँ के शिक्षक बहुत अच्छे हैं | बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ाते हैं ।